डॉक्टर दिनेश कुमार का बहुत सारा पोस्टर है इधर शेटर सब लगे हुए इधर बेंच है और आदमी बैठे है कुर्सी लगाया हुआ है बहुत सारी दवाई का हॉल है यहां दिखाई--

यहां एक महिंद्रा का शोरूम है जहां पे मोटर बाइक्स है और टेंपू सब बिक रहे है।

इधर बहुत पाइप और बाल्टी वाल्टी लगी हुई है बाइक है साइकिल ई सब लगी हुई है अंदर में आदमी बैठे है कम्प्युटर इ सब लगी हुई है और जो चप्पल है वो सब भी खुली हुई है।

यह बहुत ही बड़ी मंदिर बनाया गया है मंदिर मे लाइट लगी हुई है बहुत बड़ा मंदिर है पोस्टर बहुत सारे लगे हुए है इधर आदमी सब भी दिखाई पड़ रहे हैं उधर लेडिज सब हैं और बच्चे सब है पूरा लाइट लगा हुआ है मंदिर के ऊपर मे |

हाथ मे गिटार दिए हुए हैं बहोत अच्छी मां सरस्वती मां दिख रही है सरसती---

बहुत बड़ा यह लगता है जिम का अथि शोरूम खुला है बहुत बड़ा दिख रही है हम लोग बहुत बड़का दिखता है ये शोरूम --